कुछ लय लेबर आदमियों के द्वारा जो है इस मकान को ढाला जा रहा है। यहाँ जो है एक चचरी का पुल बनाया गाया है। बांस के माध्यम से इस पुल से ही ये मजदुर लोग जाते है।

मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में सब से खास बात ये है की यहाँ जो है। सब से ज्यादा आसाम में जो है ये मेला लगता है और यहाँ हर मेले में अलग बहुत दूर- दूर से लोग --

बहुत ही इ बड़ा पर्व माना गया है बिहार के लि --